और पानी का मौसम हो रहा है और नदी आधी खाली है राधा पानी है और दो पुल हैं

बाइक भी रखी है और पेड़ पौधे हैं और बाद्दल हो रहे हैं।